यहा पर कई सारे बर्तन दिखाई दे रहे है जिन का कलर सिल्वर दिखाई दे रहा है।

जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं जिनकी दीवार का कलर रेड ग्रीन दिखाई दे रहा है एक नदी दिखाई दे रही है जिसका कलर ग्रीन और ब्लैक--

यहाँ पे आसमान का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है और कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।